इस फोटो में एक रोड का नज़ारा दिखाई दे रहा है जिस पर जाते हुए ऑटो रिक्शा मोटर साइकिल नए रोड के किनारे लगे पोस्टर और टावर दिखाई दे रहे हैं| कुछ --

बीच में पानी चौकोर आकार में भरा दिखाई दे रहा है कुछ बड़े पेड़ और सामने आसमान भी नजर आ रहा है। पेड़ --